दिखाई दे रही है शॉप कपड़ों की नजर आ रही है यहाँ पे काफी सारे कपड़े टंगे दिखाई दे रहे है कपड़े हँगर मे टंगे दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ बड़ो के कपड़े नजर आ रहे है।

गमलों में काफ़ी सारे फूल पौधे लगे हुए है यहा पे काफ़ी सारे पेडे नज़र आ रहे है पेड़ काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे है यहा पर कुछ गाड़िया खड़ी दिखाई दे रही है वहा एक कार नज़र आ रही है।

मूर्ति के अंदर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे दिखाई दे रहे है। यहाँ कुछ लोग पूजा करते नजर आ रहे है। सामने एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। गेट --

यहाँ पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे यहाँ पे काफी सारे गेट खुले दिखाई दे रहे यहाँ पर प्लेन के चक्के नजर आ रहे।

रिसेपशन पे कुछ लोग दिखाई दे रहे यहा पे काफी सारी टेबल चेयर नजर आ रही है कुछ चेयर पर लडकीय बैठी दिखाई दे रही है या सीलिंग पे कुछ ए.सी. दिखाई दे रहे है यहा पे काफी सारे लाइटे दिखाई दे रही है।